यहाँ पे मन्नापुरम आंध्रा बैंक और एक्सिस बैंक है जिसके ऊपर कैफेटेरिया भी है।

ये बस स्लीपर कोच है जो कि कुनवर नाम के बंदे की है यहाँ पे ऑटो घर के लोग आ रहे हैं।

यहाँ पे अभी लोग नहीं हैं शायद वे इधर-उधर घूम रहे हैं यहाँ पे अच्छे काम होते हैं।